आप सामने एक फ़ोटो देख रहे हो यहां पर--

जैसे कि आप देख रहे हो यह काफी सारी--

जैसे कि आप सामने एक देख रहे हो।

आपको एक सामने बहुत बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा है जहां पर--

जैसे कि यह सामने एक खंभा सा खंभा वाला टीना लगा हुआ है।

यहां सामने आप देख रहे हो काफी सारी बड़ी बिल्डिंग है यहां पर--

सारे फूल फ्लावर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

जैसे कि आप सामने एक बहुत बड़ी पार्क दिखाई दे रही है जहां पर--

पेट्रोल पंप की दिखाई दे रही है यहां पर लिख एक साथ मे ही एक कार जा रही है जहां पर एक काफी --

जैसे की आप एक सामने देख सकते हो बहुत अच्छे बिल्डिंग बनी हुई हैं जहां पर--

पार्क बनी हुई दिखाई दे रही है और सामने देखोगे तो--

और काफी सारी लेटे भी लगी हुई दिखाई दे रहीं हैं कई व्यक्ति सारे बैठे हुए भी दिखाई दे रहे--